यहां पे मिटटी का खुदाई हो रहा हैं बगल में जनरेटर हैं नीला रंग के उसका बगल में स्टील का दो चार खंभा है।

यहां पे ब्यूटी पार्लर भी है उसके सामने एक अथि सोफा है उसके सामने दो जो एक टेबल है।

उसके सामने जो है चार बॉक्स अई हॉर्न भी लगा हुआ है।

यहाँ पे जो है जो सामने ओटो दिखाई दे रहा है बस है और चाय की दुकान है बगल में बस स्टैंड है।

इसके साथ परदा भी है उसके साथ जो है तीन चार पांच पो पोल - पोल भी है पंखा भी है टेबल भी है।

यहाँ पे एक अच्छा सा साउंड साउंड बोक्स है बोक्स के सामने दो ठेला भी है उसका बगल में है।